दीवाल के बराबर में वाटर प्रोफायर भी लग रहा है।

दीवार पर एक पोस्टर च दिखाई दे रहा है साइड में अलमारी रखी है मेज पर कुछ फाइलें रखी है।

अड़ा है लकड़ी का कुछ समान दिखाई दे रहा है रोड जा रहा है जहाँ पर दीवाल पर पेंटिंग हो रखी है कुछ पेड़ भी नजर आ --

एक गेट दिखाई दे रहा है एक सड़क दिखाई दे रही है सड़क के किनारे--

एक गाड़ी दिखाई दे रही है दो आदमी भी दिखाई दे रहे हैं सामने--

हॉल का दृश्य जहां पर कुछ मेजर और कुर्सी रखी हुई हैं दीवार पर दो पेंटिंग टंग रही हैं कुछ खंबे पिलर दिखाई दे रहे हैं।

पंखा दिखाई दे रहा है दरवाजे हैं खिड़कियां हैं।

एक मॉल को दिखाई दे रहा है जहां पर बहुत सी सिड़ियां नजर आ रही हैं।

चल रहे हैं सामने खिड़कियां है पड़तो पर कुछ सामान रखा हुआ है।

तीन कुर्सियाँ पड़ी हुई हैं एक कुर्सी पर एक आदमी बैठा हुआ है एक गेट के अंदर दिखाई दे रहा है गेट के बाहर कुछ बैनर --

लगा हुआ है साइडों में खंबे दिखाई दे रहे हैं गेट के अंदर कुछ पेड़ नजर आ रहे हैं।

एक हॉल दिखाई दे रहा है सामने कुछ गेट नजर आ रहे हैं जहां पर पर्दे पड़े हुए हैं उसके ऊपर एक पंखा--

टंग रहा है कुछ झूमन नजर आ रहे हैं लाइट दिखाई दे रही है।

सड़क है सड़क पर तीन आदमी खड़े हुए हैं।

खड़े हुए हैं एक बच्चे दो बच्चे खड़े हुए हैं।

पर क्रॉस का निशान बना हुआ है उसके ऊपर तीन सेट डला हुआ है साइडो मे--

हॉल है हॉल के साइड में एक मेट बिछी हुई है नीचे एक--

पेंटिंग रखी हुई है एक डेस्टवेन नजर आ रहा है गेट पर ही फूलों की मा--

तीन साइड डला हुआ है सामने कुछ बिल्डिंग्स है कुछ पेद पौ पेड़ नजर आ रहे हैं।

सामने कुछ सामान वाइट कलर का रखा हुआ है कुछ घर दिखाई दे रहे हैं।

एक ब्लू कलर का बोर्ड लगा हुआ है जिस पर बिहार इंपोरियल लिखा हुआ है उसके अंदर भी बोर्ड लगा हुआ--

एक स्टॉल है स्टॉल पर एक आदमी बैठा है जिसने ब्लैक कलर के कपड़े पहन रखे हैं मुंह पर मास्क लगाया--

एक ने येलो कलर की ड्रेस पहन रखी है एक ने ग्रीन कलर की ड्रेस पहन रखी है।

दिवालो पर पोस्टर दिखाई दे रहे हैं इन दो स्टैचू नजर आ रहे हैं ऊपर लाइट दिखाई भी--

बड़ा सा हॉल दिखाई दे रहा है हॉल बिल्कुल क्लीन है हॉल के सामने--

चल रहे हैं दीवार पर पेंटिंग बनी हुई है।

खिलौनों की शॉप नजर आ रही है ऊपर कुछ तार जा रहे हैं।

पेट्रोल पंप दिखाई दे रहा है जहां पर कुछ गाड़ियां--

एक पानी की बोतल भी बीच ग्राउंड में रखी हुई है साइड में दो आदमी बैठे हुए हैं।

लाइटिंग दिखाई दे रही है आसपास बिल्डिंग बनी हुई है।

नजर आ रही है खिड़कियों के सामने बिल्डिंग दिखाई दे रही है।

बॉल रखे हुए हैं दीवार पर पोस्टर टंग रहे हैं।

सड़क दिखाई दे रही है सड़क के सामने एक बड़ा सा गेट नजर आ रहा है।

पर्पल कलर का है उसके बराबर में भी एकर नजर आ रहा है।

नीचे की साइड में एक डिब्बा भी दिखाई दे रहा है बराबर में खिड़की नजर आ रही है।

सड़क है सड़क के किनारे एक स्कूटी खड़ी हुई है उसके सामने एक गेट दिखाई दे रहा है गेट पर ताला लग रहा है।

मंदिर दिखाई दे रहा है घाट पर सिढ़ियां नजर आ रही है बहुत से आदमी दिखाई दे रहे हैं।

लाइटें दिखाई दे रही हैं बड़े-बड़े से खंबे नजर आ रहे हैं जिन पर लाइटें जल रही हैं।